और हनुमान जी की मूर्ति कुछ भक्त आगे खड़े हुए हैं।

और कुछ लोहे का मशीन रखी हुई है।

और कुछ बच्चे कुछ काम कर रहे है कुछ बच्चे खड़े हु--

और यहां पे पर्दे पड़े हुए हैं जो की रेड कलर के हैं और ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है।

और शीशे लगे हुए हैं और सामान भी रखा हुआ है।

कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो कि एक ब्लू कलर कि कैप लगाए हुए हैं।

और कुछ सामान प्लास्टिक की छोटी छोटी बाल्टियां हैं छोटे छोटे डिब्बे हैं और छोटे छोटे छन्नियां कुछ बड़ी बड़ी छन्नियां भी हैं।

शिवलिंग के ऊपर सांप बना हुआ है और उसके पड़ोस में शीशा के अंदर बंद है।